इस दृश्य में यह दिखाया जा रहा है की यह एक गाड़ी का शोरूम है जहाँ पे कई नई-नई प्रकार की गाड़िया खड़ी है और इन्हे दुकान में अच्छे से सजाया गया।

यह एक ज़ू का दृश्य है यहाँ पे एक चीता बड़े ही आराम से बैठा हुआ है और चारों तरफ से जाली मारे हुए हैं ।

इस दृश्य को देखने से यह प्रतीत हो रहा है की यह किसी कंस्ट्रक्शन का काम वाला जगह है । यह ऐसा लग रहा है की किसी मॉल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ।

उ बहुत ही परशिष्ट जो सबसे ज्यादा बिहार में उ जो है उसका दृश्य है।

बूढ़े बुजुरग फिर आकर यहाँ व्मा भी करते हैं और गर्मियों के दिनो में बहुत लाभदायक हैं इस नदी में बहुत सारी मछलियाँ भी होती होंगी मुझे पता नहीं है पर अच्छा दृश्य --

बड़ा इमारत है इसमें बहुत सारे लोग भी रहते होंगे कम से कम दस-पंद्रह तल्ले तो है ही अच्छा है।